यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हैं। लड़कियां पढ़ रही हैं। एक लड़का अ जैंट्स है जो कम्पुटर पर बैठे हुए हैं। चैर हैं जो एक ही कलर की चैर है। मतलब बोहोत अच्छी लग रही है।

यहाँ पे बा बड़े छोटे पौधे है झाड़ियां हैबड़े बड़े पत्थर है पहाड़ टाइप है और एक झाड़ी है जिसपे कोई पक्षी भी बैठा हुआ है और बहुत बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पर।

घर है जिसके नीचे एक किराना की शॉप है जिसमे सामान रखा हुआ है एक सिलेंडर भी रखा हुआ है।